बहुत सारा पानी भरा हुआ दिखाए गया है वे ऊपर से झरने में भी पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति ने सोला भी अड़ा हुआ है वे चारो तरफ की दीवारे। --

यहाँ रात का दृश्य दिखाया गया है यहाँ रंग बिरंगी लाइटे लगाई गयी है।

आँ सफ़ेद रंग की कईं बिल्डिंगे दिखाई दे रहीं हैं।

यहाँ सीढ़ियाँ भी लगी हुई दिखाई गई हैं।

यहाँ छत पर दो पंखे दिखाई दे रहे है ये छत पर सफ़ेद रंग का बल्ब लगे हुए है।